चलो गाइस आ चूके है और काफी सारी घाँस नज़र आरही हैयह पर बहुत सारे गुलाब के फूल बी खिले हुये नज़र आरहे है।